एक छोटा सा तना का पत्ता सब निकला हुआ है मकान पूरी तरह से काला हो गया है बहोत सारा गलियारा सब बना हुआ है।

तार सब गया है घर के अंदर ऊपर में बाज- बाजा लगा है अँधेरा का टाइम है।

लाइब्रेरी ऊपर लाइब्रेरी के ऊपर में जंग लग गया है शायद |